जहां पर लोग अपना मेकओवर करवाने के लिए जाते हैं।

बहुत ज्यादा आकर्षित करते हैं यहां पर बहुत सारे गिफ्ट्स पड़े हुए हैं एक छोटा --

यह एक स्वीट है जिसको दूध में डाल के या फिर सीधे लोग खा सकते हैं बी --

फोन पर बात कर रहे हैं और दूसरे आदमी खड़े हुए हैं यहां पर एक स्नैक बार भी है जहां --

एक आदमी यहां पर खड़ा हुआ है जिसने एक किताब को ले रखा है।

कुछ बैठने की व्यवस्था है और कुछ पौधे है यहां पर घास अच्छी तरीके से नहीं लगी हुई है।

एक केक येलो कलर का है और दूसरे केक की पेस्ट्रीस कट की हुई है जोकि पिंक कलर का है।

हेलो यह एक स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है ये एक राजकीय कोर्ट डिस्पेंसरी --

यहां पे सभी लोग अपना स्वास्थ्य का चेकअप करने और दवाइयां लेने के लिए आते हैं यह एक लाल कलर का भवन है।

आ_रो और बहोत सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान पड़े हैं जहां पर लोग आके उनको खरीद सकते हैं।

यहां पर एक व्यक्ति गाड़ी पे कुछ काम कर रहा है।

अगर आपकी आंखें भी खराब है तो कृपया करके इधर आइए और पैसे दीजिए और --

मेरे को भी बहोत सुंदर लग रहा है क्या करें ओके टाटा बाय अल --

यह एक बुक स्टोर है जहां पर खूब सारी किताबें पड़ी हुई है।

की बहुत ही अच्छी बुक होती है सभी को पढ़नी भी चाहिए ये किताब --